और सामने एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई है|

सामने एक एस _के अस्सोसिअत का बड़ा सा लगा है जिसे वाइट कलर से पेंट किया गया है और एस _के अस्सोसिअत में एक सोफे चेयर रखा गया है